उनके गले में देखो चरस का भी कितना बड़ा हुआ है ये चरस के बारे में प्रचार करते फिर है यहाँ का।

और यहाँ हर प्रकार के फूल मिलते हैं सूरजमुखी के और गेंदे के और गुलाब के और कोई सी भी माला बनवा लो इन्होंने देखो कितनी बड़ी माला बनवाई है ये कितनी अच्छी लग रही है कितनी सुंदर लग रही है।

ये होटल कितना बढ़िया है ना और इन्होंने इस स्टेज पे ही कितना मस्त फोटो लगा लेका लगता है ये फोटो उनका दिखा है जिनकी शादी है इस होटल के अंदर लड़की लड़का कितना बढ़िया लग रहे है न।

कितना मस्त लग रहा है वैसे ही अगर पुताई के देखने में तो पुताई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है।

और बहुत सारे पंडित रहते हैं मंदिर पे और आसपास और मंदिर भी है दो तीन और बहुत --

आगे देखो शीशा लग रहा है कितना मस्त लगेगा ये लगने के बाद जब पूरा हट जाएगा।

अब इसको लोग अब देखने आते हैं बहुत दूर-दूर से। बोहोत बोहोत दूर के लोग आते हैं और देखते हैं इसकी बनावट कैसे है डिज़ाइनरदार था कितना अच्छा लगता था ये और इसकी डेन्टिंग पेंट --

जहाँ गैस वगैरह या कुछ मतलब क्या फैक्ट्री में काम होता है ये टावर है फैक्ट्री में ये खड़ा हुआ यहाँ लोग बाग बहुत कम आते हैं यहां बस बड़ी-बड़ी गाड़ी और समझदार लोग भी आते हैं।

सारी गाड़ी बेकार हो गयी थी तो हम यहाँ गैरिज प लाये है और इसमें बहुत लम्बी सी थी गंदी थी तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी गाड़ी को धोया सफाई की और उसके बाद में धोने के बाद हमने देखा तो हमारी गाड़ी बिल्कुल नयी लग रही थी और इन --

गमले कितने अच्छे लग रहे हैं। गुलजस्तों --

जोकि बोहोत अच्छा लग रहा है।

मजा आ गया देख करके और एकदम बढ़िया-सा लग रहा है।

देखो हमारा खेत है और यहाँ पे हमने पत्ता को भी बोली की है कितनी सारी है और कितनी हरी भरी हो रही है अब इसकी कटाई करेंगे हम कटवाएंगे इसे और इसे मंडी में बेच के आएंगे और हमें अच्छे पैसे मिलेंगे पैसे। पैसे --

ये देखो मार्केट हमारे हैं कि यहां बहुत जाम रहता है और यहाँ बहुत सारे ऑटो चलते हैं ये।